यहाँ पर काफी सारे लाल रंग की कुर्सियाॅं लगी हुई हैं जिनमे से कुछ पर सफ़ेद रंग का कपड़ा और लाल रंग का रिब्बीन बंधा हुआ है।

साथ ही यहाँ पर एक बोहोत बड़ा पेड़ है जो कि सुख चूका है।

तथा यहाँ पर फाल सीलिंग का काम भी बहुत सुन्दर डिज़ाइन के साथ किया गया है।

ये एक लिविंग रूम है।

इसमें साबुन सर्फ़ शैम्पू तेल --

'' जिस पर जूते और स्मेंस वियर मिलते हैं। ''